नमस्कार
इस tutorial में हम निम्न सीखेंगे
* आणविक model में hydrogen परमाणु को functional group से बदलना
* bonds को जोड़ना और मिटाना
* परमाणुओं को जोड़ना और मिटाना
* और सीखना कि popअप menu जिसे contextual menu भी कहते हैं कैसे प्रयोग होता है
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको निम्न के साथ परिचित होना चाहिए
* jmol application window और
* modelkit function जो आणविक models को बनाने में प्रयोग होता है
सम्बंधित tutorials के लिए कृपया हमारी website पर जाएँ
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
* ubuntu os version 1204
* jmol version 1222
* और java version 7
jmol application खोलने के लिए dash home पर click करें
search box में type करें jmol
jmol icon screen पर प्रदर्शित होता है
jmol application window खोलने के लिए jmol icon पर click करें
अब propane के model के साथ शुरू करते हैं जो हमने पहले ही बना लिया था
file खोलने के लिए tool bar पर open file icon पर click करें
screen पर एक dialog box दिखता है
उस folder पर click करें जहाँ हमारी file है
मेरी file desktop पर स्थित है
अतः मैं desktop select करुँगी और open button पर click करुँगी
file or url text box में file का name type करें
फिर open button पर click करें
screen पर propane का model दिखता है
हम propane के hydrogens को निम्न functional ग्रुप्स के साथ बदल सकते हैं:
hydroxy amino halogens जैसे fluro chloro bromo और अन्य
इसको propanol में बदलने के लिए मैं propane अणु में hydroxy group जोड़ना चाहती हूँ
model kit menu खोलें यहाँ functional ग्रुप्स की एक सूची उपलप्ध है
oxygen परमाणु के सामने वाला box जाँचें
पहले carbon परमाणु से जुड़े hydrogen परमाणु पर click करें
ध्यान दें कि hydrogen परमाणु hydroxy group से बदला गया है यहाँ oxygen परमाणु लाल रंग में दिखता है
अब propane 1propanol में बदल गया है
अब 1propanol को 2chloro1propanol में बदलने की कोशिश करें
model kit menu से chloro group select करें
दूसरे carbon परमाणु से जुड़े hydrogen परमाणु पर click करें
अब हमारे पास 2chloro1propanol का model है यहाँ chlorine हरे रंग में दिखता है
आप energy minimization कर सकते हैं और image को dot mol file में सेव कर सकते हैं
यहाँ एक नियत कार्य है
* निम्न अणुओं के मॉडल्स बनायें 3bromo1butanol और 2amino4chloropentane
* energy minimization करें और image को jpeg format में सेव करें
भिन्न file formats में image सेव करने के लिए:
tool bar में save current view as an image icon प्रयोग करें
आपका पूर्ण नियत कार्य निम्न प्रकार दिखना चाहिए
अब jmol application window पर जाते हैं
jmol application एक popup menu भी देता है
आप दो भिन्न methods से popup menu access कर सकते हैं
model kit menu को exit करें अगर यह खुला हो
model kit menu पर नीचे जाएँ और exit model kit mode पर click करें
popup menu को खोलने के लिए panel पर mouse button पर right click करें
panel पर popup menu दिखता है
परमाणुओं के प्रदर्शन में रूपांतरण के लिए popup menu अनेक functions देता है
इसमें अनेक प्रकार के selection और प्रस्तुतीकरण विकल्प होते हैं
इस menu में ज़्यादातर functions menu bar में duplicated होते हैं
popup menu में items स्वतः स्पष्ट होते हैं
इनको विस्तृत विवरण की ज़रुरत नहीं होती है
popup menu को exit करने के लिए jmol panel पर click करें
popup menu को access करने का दूसरा तरीका jmol logo पर click करना है
यह jmol panel के नीचे दायें कोने पर स्थित है
अब देखते हैं कि इस अणु को कैसे edit करते हैं और इथेन अणु में बदलते हैं
इसके लिए हम hydroxy group chlorine group carbon और दो hydrogen परमाणुओं को मिटायेंगे
model kit menu खोलें
delete atom के सामने वाले box को जाँचें
उन परमाणुओं पर click करें जिन्हें आप मिटाना चाहते हैं
oxygen chlorine और carbon परमाणु
एक इथेन अणु बनाने के लिए हमें इस अणु में hydrogens जोड़ने हैं
model kit menu में add hydrogen विकल्प पर click करें
अणु पर दो hydrogen परमाणु जोड़े गए हैं
अब हमारे पास screen पर इथेन का model है
अब सीखते हैं alkenes और alkenes कैसे बनाते हैं
अणु में double bond बनाने के लिए model kit menu खोलें
double विकल्प के सामने जाँचें
इथेन अणु में दो carbon परमाणुओं के बीच के bond पर cursor रखें
carbon परमाणुओं के चारों ओर लाल rings की rings दिखाई देती हैं
bond पर click करें
ध्यान दें single bond double bond में बदल गया है
हमारे पास panel पर ethene का model है
अब ethene को इथाइन में बदलते हैं
modelkit menu पर click करें और triple विकल्प के सामने click करें
ethene अणु में double bond पर cursor रखें और इस पर click करें
double bond triple bond में बदल जाता है
यह इथाइन का model है
अधिकतम स्थिर कान्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए energy minimization करें और सेव करें
अब इसको सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने निम्न करना सीखा
* alkanes में hydrogen परमाणु को functional group के साथ बदलना
* alkenes को alkenes और alkenes में बदलने के लिए bonds जोड़ना
* परमाणुओं को जोड़ना और मिटाना और
* popupmenu उपयोग करना
नियत कार्य में
# 2fluoro13butadiene और 2pentyne के मॉडल्स बनायें
#model के प्रदर्शन को wireframe मे बदलने के लिए popup menu प्रयोग करें
#energy minimization करें और image को pdf format में सेव करें
आपका पूर्ण नियत कार्य निम्न प्रकार दिखना चाहिए
इस url पर उपलब्ध video देखें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
अधिक जानकारी के कृपया contact @spokentutorial org को लिखें